एक आदमी रिकॉर्डिंग करता हुआ दिख रहा है और कुछ व्हाइट एंड ग्रीन एंड येलो कलर की लाइटें चमकती हुई दिख रही हैं।

व्हाइट कलर की लाइटें भी हमें बड़ी बड़ी दिख रही हैं और ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक ग्रास का ग्राउंड दिख रहा है जहां पे व्हाइट कलर की लाइटें और कुछ खाने पीने के समान सजे हुए डेस्क में दिख रहा है।

राइट हैंड साइड पे कुछ रेड कलर के स्विचेस हमें दिख रहा हैं।

कुछ बैनर दिख रहा है जिनपे विशाल बुक स्टोर और एक ग्रैविटी कोचिंग का बैनर दिख रहा है।

व्हाइट कलर की टाइल्स हमें दिख रही है और एक लाइट ब्राउन कलर का दरवाजा दिख रहा है।

आसपास ढ़ेर सारी व्हाइट कलर की बिल्डिंगे दिख रही हैं।

कुछ जिम प्लेयर्स और कुछ इक्विपमेंट हमें जिम के दिख रहे हैं।